यह एक वी_आई_पी कॉलोनी एरिया है यहां पे तीन बिल्डिंग बनी हैं सॉरी चार बिल्डिंग बनी हैं।

और ब्लू पिंक कलर के फूल यहां पर लगे हैं और यहां पे येल्लो कलर के फूल लगे हैं। पीछे ऑरेंज कलर के फूल लगे हैं।

इंडिविजुअल स्टडी केबिन बने हुए हैं जिसमें हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग स्पेस दिया गया है।

ऊपर व्हाइट क्लाउड हैं उसके ऊपर आसमान है नीले कलर का।

ये पंखा है यहां पे तराजू है यहां पे टेप रखा है पीछे फ्रिज है।

यहां तो ऑटो बेचे जा रहे हैं यहां पे दो ऑटो हैं डीजल ऑटो दोनों बैटरी ऑटो हैं।

उधर एक ब वो बना है। यहां पे दो चेयर रखी है तीन चेयर रखी हैं। एक टेबल व्हाइट कलर की टेबल है। दो आदमी खड़े हैं।

पीछे एक सोफा टेबल रखी है। वो जिसका कलर रेड गोल्डेन है।

दो पहाड़ है नीचे जंगल है पूरा ग्रीन --

यहां पे जीने जा रहे हैं थोड़ा अंडरग्राऊंड दुकान होने से पड़ोस में एक पेंटिंग की दुकान है।

एक सोफा रखा छे तरह तकिया हैं एक टेबल है पीछे एक फोटो लगी है यहां पे लैंप है।

चार लोग जा रहे हैं अंदर थोड़े पेशेंट हैं।

यहां पे एक ग्रीन कलर की जाली लगी है एक कार जा रही है एक ऑटो जा रही यू_पी एस यू_पी एस_आई यू_पी_पी --

फ्लावर्स भी लगे हुए हैं यह एक गवर्नमेंट या प्राइवेट ओर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन है।